या एक फल हैं अंगूर इसे हम लोग अंगूर कहते हैं ये काले हैं या ये--

ये पार्क हैं पार्क में किनारे-किनारे वो--

और कुर्सी ने ऑरेंज रंग का पहना हुआ हैं घर के रास्ता सामने से गया हैं बीच में गोला बना हुआ हैं गोला में --

या एक बहुत सुंदर सा जगह पे कोचिंग खोले हुए हैं कोचिंग खोले हुए हैं लाइट हैं पंखा हैं स्टूडेंट हैं टेबल हैंकुर्सी हैं पढ़ाई कर रहे हैं।